वो बहोत ही अच्छा और सुनहरा दिख रहा हैं लेकिन पानी बहोत ही गंदा किया हुआ हैं।

यह गाय है काला और सफ़ेद पर इसको ग्रीन कलर के रस्सी में बाधा हुआ है यह बहुत ही शांत खड़ी है और यहाँ पे करकट जैसा घर में उसको बांधा गया है और यह गाय हमारी माता है और ये दूध भी देती है।

ये किसी दुकान में पर्दे रखे हुए हैं जो बहुत सारी पर्दे हैं लाल गोल्डन कलर आसमानी कलर कथी कलर और फूल उल भी हैं इस परदे में।

यहाँ सैंडिल - ओंडील मिलता है और एक बाइक भी लगा हुआ --